यह एक शॉप का फ़ोटो है यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा है।

यहाँ पे लोग घूमने जाते है आते है और पहाड़ है और--

ये वाटरलैंड का फ़ोटो है यहाँ पे बहोत सारा--

फोन से फोटो खीच रही है ए_सी लगा हुआ है मिरर है।

चादर नहीं बड़ा सा कुछ कारपेट सा ढका हुआ है बगल से रोड गई है।

ये भी एक जू का फोटो है जहाँ पे नहीं जू का फोटो तो नहीं होगा।

आई मीन ये लोग दौड़ने का प्रैक्टिस कर रहै है या फिर इन लोगों का कॉम्पिटेशन है यह --